इस तस्वीर में मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखाई दे रही है जहां पे लैंप में लाइटों की दुकान है प्रेस दिखाई दे रही है।

ये फर्नीचर सेट है फर्नीचर सेट में गया है जचाया और कूलर भी पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है और एक भाई साहब है जोकि अह --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

और जिसमें ये मुझे होटल या रेस्टोरेंट लग रहा है जिसमें खाने के पोस्टर भी लगाए गए हैं शाही पनीर दाल और मक्खन तरह के --

एक पंखा भी लगा हुआ जिसमें काउंटर के अंदर भी एक भाई साहब जो की खडे हुए है और दो काउंटर के बाहर मे दो आ व्यक्ति खडे हुए नज़र आ रहे है जो की आपस मे --

इसमें पानी भरा हुआ है तालाब के जैसे ये कोई बीकाने बीकानेर की प्रसिद्ध जगह है कह भी सकते हैं ये --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक बड़ा ही हॉल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जो कि भाई साहब है ये भाई साहब जो कि दुकानदार हैं दो कस्टमर लग रहे हैं जो की खड़े हुए हैं एक पंख लगा हुआ है।

और ये खुद जो कि कंपनी है उसका प्रचार बोर्ल्ड के ऊपर की तरफ चल रहा है पीछे की तरफ देवी देवताओं की फोटो भी पड़ी हुई है।

गुरुद्वारा को अच्छे तरीके सजाया गया है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये एक बस स्टै बस स्टॉप या फिर रेलवे स्टेशन जोकि छोटा ग्रामीण क्षेत्र का हो सकता है और पीछे की तरफ में देखें --

कुर्सियां पड़ी रखी हुई है और ये एक बार की तरफ कांच के कांच का बड़ा गेट है और ऐ_सी --

इस तस्वीर में मुझे दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जो कि मुस्लिमों की लग रही है मुस्लिम की जैसे मस्जिद या कोई दरगाह हो सकती है इसके आगे--

इस तस्वीर मे मुझे एक दिखाई दे रही है जोकि एक पोस्ट बैंक लग रहा है।

आसमान खुला हुआ है स्वच्छ लग रहा है और इसके आगे एक दो आदमी भी चलते फिरते नजर आ रहे --

गैरेज पर लाया गया है और इसकी डिक्की भी फट गई है और पीछे की दुकान में देखो एक नीचे--

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक गब्बर नाम का व्यक्ती बार में बार दिखाई दे रहा है ये एक बार है जिसमें --

हाथ नजर आ रहा है हाथ पर कुछ नाम लिखवाया गया है और पीछे की तरफ में काउंटर में कुछ क्रीमें और दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है की एक लोग--

दिखाई दे रही है दो मंजिला हो सकती है और नीचे की फ्लोर में लाइटे लगी हुई है और --